जी उन उनकी नीचे बॉल रखी हुई दिखाई दे रही है अलग-अलग वैरायटी के बैट दिखाई दे रहे है उनके भी पीछे भी कुछ स्टॉक रखा दिखाई दे रहा है।

समना झार जैसे दिखाई दे रही है एक सामने से टिपरी सा दिखाई दे रहा है।

मुझे एक कमरा दिखायी दे रहा हैकमरे में सामने एक एल_ई_डी रखी दिखायी दे रही है जीसके ऊपर एक सेटअप बॉक्स दिखायी दे रहा है सामने एक टेबल दिखायी दे रहा है जिसके ऊपर चायवाला--

थोड़ी दूरी पर एक झूला दिखाई दे रहा है और नीचे छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे है। हैं

एक आदमी के हाथ दिखाई दे रहे हैं हाथों के सामने बोहोत सारी मिर्चीया दिखाई दे रहे हैं सामने एक कैरट दिखाई दे रहा है आदमी मिर्ची के तोड़ते दिखाई दे रहा है साइड मे एक रेड कलर की बोरी दिखाई दे रही है सामने एक पन्नी दिखाई दे रही--